लिले रंग की टी शल्ट में लड़का ह--

और लाल रंग की मस्जिद खड़ी हुई है यहां में।

और एक पेड़ खाया खड़ा है।

ऊपर एक वाइट रंग की टाइल लगी हुई--

लाइटें लग रही है वाइट रंग की।

पीले रंग की शर्ट पेहन रखी है लड़के ने।

लाल रंग के खंभे दिख रहे हैं।

इ इसमें चॉकलेट रंग की टेबिल है।

और उसके ऊपर काला बॉक्स रखा हुआ चॉकलेट रंग की कुर्सी है।

गोल्डन रंग की लाइटें लगी हुईं हैं।

ये खेल का गोदाम है।

गाडी रखी खड़ी हुई है।

इसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए है।

बहुत सारे लेडिस खड़ी हुई--

हरे रंग के बोर्ड रखे हुए हैं।

और रेड लंग रेड रंग की लाइट बल रही है।

बहोत सारे बंदे खेल रहे--